और डिस्प्ले के अंदर भी दो लोगों को दिखाई दे रहे है।

यह एक किला है। और साइड मे हरी हरी घासे रास घास है रास्ता है जो है।

साइड मे बहुत सा खासा पहाड़ है सुनेरा पहाड़ हरे हरे पेड पौदे है और बहुत बड़ा समंदर है और नीला नीला कलर दिखाई दे रहा है।

यह एक लाइबेरी है।

यह एक मंदिर है ब्लैक कलर का उसमे ये भगवन है माला पेहना हुआ नीचे भी माला रखा हुआ है और साइड मे रो रोड बना हुआ है उसपे व्हाइट कलर से ॐ लिखा हुआ है।

और एक स्कू दो स्कूटी खड़ी है एक बाइक है रेड कलर की सीडी है जो स्कूल का है वो व्हाइट कलर का है और सबसे कोने मे एक कार भी खड़ी है।

झालर टंगा है और वेलकम भी लिखा हुआ है बैनर पे कार्टून है उसमे एक लड़की भी खड़ी है और नीचे सिडिया भी है।

यह एक बिल्डिंग है वे तीन से चार मंजिल का बिल्डिंग है।